यह एक दुकान है जिसका नाम है जयकार फॅमिली रेस्टोरेंट । यहाँ लोग खाना खाने की लिए आते है।

यह एक पहाड़ है जो कि पहाड़ के ऊपर से यह फोटो खींचा गया है जो कि देखने में काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा है।

यह एक छोटा-सा गार्डन है जो कि इस प्लांट बोहुत सारे यहाँ प्लांट्स भी है। इस तरह के प्लांट्स जल्दी नहीं मिलते हैं।